बहोत सी दुकाने नजर आ रही हैं।

यहां हमें सामने एक दुकान नजर आ रही है।

उसपर एक लोहे की खिड़खी दिख रही है और एक दरवाजा भी बना हुआ है।

गमलों पर कुछ खंबे लगे हुए हैं हमें एक सामने खंबा नजर आ रहा है जिस पर लाइट और कैमरा लगा हुआ--

यहाँ पर हमें बहुत से बड़े पेड़ नज़र आ रहे है।

मे एक्सरसाइज के बहोत से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं।

काले रंग की यहां प बहुत सी एक्सरसाइज के लिए मशीनें लगी हुई है।

साथ ही ऊपर एक काले रंग का बॉक्स हमें यहां दिखाई दे रहा है।

कुछ प्लास्टिक के पीले रंग के चेयर देख रहे हैं।

एक ग्रे कलर का हमें टेबल भी नजर आ रहा है।

जहां हम सामने एक पार्क देख रहे हैं।

रैक पर हमें कुछ डिब्बे बहुत से कपड़े नज़र आ रहे है।

सामने काले रंग की टेबल पर--

एक स्टील की बाल्टी दिखाई दे रही है।

हां ये भूरे रंग का टेबल है।

साथ ही हमें सामने एक बड़ा सा ब्रिज दिखाई दे रहा है।

साथ ही सामने की टेबल पर हमे कुछ बर्तन और एक सॉस की बोतल दिखाई दे रही हैं।

कुछ बड़ी खिड़कियां नजर आ रहे हैं सामने एक बड़ा सा आईना भी लगा हुआ--

पेड़ घास नजर आ रहे हैं।

रैक पर हमें कुछ डिब्बे नजर आ रहे हैं साथ ही पीछे हमें कुछ प्लेट्स घड़ियां और बैग दिखाई दे रहे हैं।